जिसे कि लोग यहाँ पे आते हैं खरीदने और यहाँ पे बहुत भीड़ होती हैं।

यहाँ पे बच्चे-बड़े सारे लोग आते हैं और यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत सारे झूले होते हैं।

एन्जॉय करते हैं। घूमते-फिरते हैं।

इस तालाब में बहुत पानी है इस तालाब के पानी से लोग सिंचाई करते हैं नहाते हैं।